ये एक शॉप है जहां पे कितने सारे कपड़े हैं।

उसके नीचे सीढ़ियां हैं सीढ़ियों के आगे--

जिसका कलर सफेद रंग का है।

जिसके अंदर कितने सारी चेयर्स लगी हुई हैं चेयर्स का कलर ब्राउन हैं।

जिसका कलर ग्रे कलर का है और साथ में एक आदमी खड़ा है।